यहां मुझे एक स्टूल दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे एक रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे सिहोरा रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे रेलवे ट्रैक दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर मुझे एक काउंटर दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे एक गैरेज दिखाई दे रहा है।